इस पिक्चर पे मुझे एक लंबा रस्ता दिखाई दे रहा है रस्ते के दोनों तरफ बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

और रास्ते के साइड पे एक गार्डन जैसा है उसके अंदर भी बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं और सामने एक ले --

कुछ लोग मिट्टी को खोद के कुछ निकालने की कोशिश कर रहा हैं।